आइये यहाँ पे देखिए अपने तरह का शेरवानी ओरवानी सब दुकान पे मिलेगा और लीजिये उसको।

और जूस के साथ उसको सजाया गया है।

यह हमारा के डैम बना हुआ है। जिस से झरने से पानी निकलता है और काफी अच्छे सेटअप बना हुआ है। जहाँ पे एक प्यारा सा पुल है जिसमें आने-जाने का रास्ता गाड़ियाँ गाड़ियाँ निकल --

ये देखने से लग रहा है स्टेशन है और जीआरपी का है लग तो रहा है भटनी ही स्टेशन है तीन नंबर प्लेटफार्म --